यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है लाल कलर की गेट कमरा है और बगल में है कमरा पीले कलर का।

और उम्म ईंटें बिछी हुई है।

एक बहुत बडा चर्च है झंडा हम्म झंडा फहरा हुआ है। और --

और किताब लिए हुए है और --

गंदा-गंदा सा पानी दिख रहा है।